उनके ऊपर दो लाइट दिख रहे है बहोत सारे व्हीकल दिख रहे है दो वाइट कलर की कार दिख रही है एक--

और भी बहोत सारे पेड़ नज़र आ रहे है नीचे बहोत सारा पानी है ।

सेवन सेवन ए एक प्राइमरी स्कूल है एक बच्ची किताब ले के दिख रही है कुछ बच्चे स्कूल में जाते हुए दिख रहै है।

इधर बोतल दिख रहे है कुछ वे वेपर्स भी दिख रहे है और नीचे कांच का टेबल है ।

तालाब दिख रहा है तालाब के बाजू में एक बड़ा सा पत्थर है उस पत्थर में एक आदमी बैठा हुआ है ।

इधर से लोखंड की सीख लगी हुई है पीछे से बहुत सारे माउंटेन और पेड़ दिख रहे है ।

पार्क जैसा दिख रहा है एक बड़ा पेड़ दिख रहा है इधर वाटर लाइन की सही पाइप लाइन गयी हुई है छोटे-छोटे--

बलून दिख रहे है पेन दिख रहे है ये एक बुक डिपो है एक आदमी ने ब्लैक कलर का जर्किन --

घर गंजेल है और बैलून का कलर ऑरेंज ग्रीन स्काईब्लू है ।

पेड़ दिख रहा है कुछ वायर्स दिख रहै है और एक इलेक्ट्रीशियन की पोल दिख रही है और उसमें से वो वायर गए हुए है और एक टाउन दिख --

और उसको एक वोटा दिख रहा है उस वाटे पे भी भोत सारे पत्थर दिख रहे है और नेचर भी बहुत सूरत दिख रहा है ।

दो आदमी दिख रहे है उनके पीछे कुछ प्रानो के या पेड़ो के पोस्टर लगाये गए है एक --

ये एक डैम है डैम के दरवाजे खुले हुए है उनके ऊपर एक पुल है पानी ऐसे मस --

है और ओ गेट जुने ज़माने में हुआ करता था और उसकी शैडो नीच नीचे जमीन पर गिर रही हैं।

ढक दिख रहे है नीले कलर के भोत सुन्दर ये नेचर दिख रहा है भोत बड़ा एक गार्डन है और इधर घूमने जा सकते है ।

बहोत बड़ी व्हाइट कलर की एक दो बिल्डिंग्स दिख रहे है ऊपर--

इधर भी एक पोस्टर लगाया हुआ है उसपे भी कुछ इनफार्मेशन लिखी हुई है एक इलेक्ट्रिक का खम्बा है उसमें से वायर गई हुई हैं।

और एक बच और उनके पेरेंट्स दिख रहे है उसपे ऑरेंज कलर की लाइट लगी हुई है ।

नीचे मिट्टी है और ये जो बहोत सुन्दर है माउंटेन भी बहोत मस्त दिख रहे है।